सामने डे ग्लोब कैफ लिखा हुआ है।

सी रखी हुई है लोहे की।

ये एक गैरेज है जिसमें एक बड़ा सा पत्थर बना हुआ है।

सामने कुछ ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

फिरोजी कलर की पन्नी लगी हुई है और दो बैनर व्हाइट कलर के लगे हुए हैं।

कुछ स्टैचू पे कपड़े टंगे हुए हैं रंग बिरंगी।

एक लोहे का लाल कलर का काउंटर बना हुआ है जिस पे ढेर सारी दिया रखी हुई हैं।

इसमें ढेर सारे भगवान रखे हुए हैं और उनके ऊपर फूल टंगे हुए हैं।

दो पंखे लगे है व्हाइट कलर के और कुछ लाइटे लगी हुई है।

नीचे वाली एक बाइक खड़ी हुई है और एक पिंक कलर का कैडी बियर रखा हुआ है।

जमीन पे टाइल्स मार्बल बिछा हुआ है।

लोहे के कुछ रॉड लगे हुए हैं।

एक गेट लगा हुआ है लोहे का ब्लैक कलर का और चप्पलें पड़ी हुई हैं।

पे कुछ ढ़ेर सारी लाइटें लगी हुई हैं।

दीवारों पे वाइट कलर का पेंट है।

एक लोहे खुर्सी रखी हुई है।

सामने दो टावर लगे हुए हैं बड़े बड़े लोहे के उसमें लाइटें जल रही हैं।

एक गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की।

बच्चों के खेलने वाले ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं और कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

ऊपर एक लाल कलर का स्टार बना हुआ है।

सामने एक मेन दरवाजा है और ढेर सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं।

कुछ गमले रखे हुए हैं व्हाइट और रेड कलर के और कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

ऊपर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है और दो बोर्ड लगे हैं रेड और पीले कलर के--

ये एक रेस्टोरेंट है जिसमें ढेर सारी कुर्सियां लगी हुईं है व्हाइट और ब्लैक कलर की और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ये एक बड़ा सा घर है जहां मार्शल आर्ट सिखाया जाता है और ढ़ेर सारे लोग हैं जो झुके हुए हैं।